ये एक रूम है बड़ा सा इसमे जिम वाला सब चीज है जिसमे जिम एक लड़का कर रहा है।

बोहोत खूबसूरत स्टेज दिख रहा है | कलर कलर का है ग्रीन पिंक रेड --

बाउंड्री के बगल से पूरा पेड़-पौधे दिख रहे है छोटे-छोटे काफी देखने में स्टैंडर्ड दिख रहा है और शाम का समय है पूरा स्काई --

और इधर बगल में सीढ़ी टाइप का दिख रहा है।

रास्ते के बगल में दिख रहा है ज्यादा खेत और खेत के बगल-वगल में पेड़ पौधा दिख रहा है।

और बाहर छोटा-छोटा पेड़-पौधा --

ये शादी का माहौल चल रहा है यहां पूरा टेंट - उन्ट गिरा है सजावट अच्छा किया गया है।

ये एक मंदिर है बड़ा सा काफी खूबसूरत देखने में लग रहा है और ये इसका गेट भी काफी लंबा-लंबा बना है।

जगह है जो यहां गाड़ी बस स्टैंड है जहां बस -वस लगा है काफी भीड़ हैं काफी आदमी दिख रहा है।

ये स्टेशन दिख रहा है काफी लंबा चौड़ा है पूरा लोहे का उम्म वो लगा है ऊपर से उतरने वाला ओवर ब्रिज भी है।